ये कोई चिड़िया घर है जिन में बहुत सारे हरी अ घांस खा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े प्लान्ट है।

सामने एक छप्पड़ बना हुआ है एन्ड उसके बगल में एक येलो कलर का फ्लावर पीछे की ओर एक बिल्डिंग है जिसका कलर व्हाइट है।

क्लास रूम के ऊपर में बहुत सारे लाइट्स लगाए गये हैं।

आगे में एक खिड़की है जिन में शीशा लग हुआ है वो सारी खिड़कियां खुला है इनमें दीवार है जो व्हाइट कलर कि है।

जो गोल्डन कलर का है बीच में एक स्टोन डाला गया है।

बहुत लम्बे-लम्बे ऊँचे-ऊँचे अ पेड़ लगे हुए है सामने बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग है।